बैंक दिखाई दे रहा है बाहर दो तीन आदमी बैठे हुए एक लेडीज भी बैठा हुआ है और आदमी से खड़ा हुआ है बैंक के पास--

यहाँ पे चेयर सा दिखाई दे रहा है खाते-खाते पे टेबल बीच में रखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है।

और यहां पे ऊपर झालर जैसा दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है आसमान का उजला दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे लड़की से दिखाई दे रहा है ये घर दिखाई दे रहा है मीटर दिखाई दे रहा है खिड़की दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है जिसका रंग ब्लैक दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे पेड़ से पीछे दिखाई दे रहे हैं बीच में सुखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पे आदमी सब दिखाई दे रहा है यहां पे एक लेडीज भी दिखाई दे रहा है यहां पे गुफा दिखाई दे रहा है बहुत सारा पथल से दिखाई दे रहा है ।

अभी यहा बिजली का तार दिखाई दे रहा है बोर्ड दिखाई दे रहा है ऊपर भी पिला--